लोग इन्तेजार कर रहे है पंखे चल रहे है।

तालाब के किनारे कुछ घर देख रहे हैं आसपास पेड़ दिख रहे हैं बादल दिख रहे हैं।

चित्र एक रेस्टोरेंट का दिख रहा है यहां पर बहुत से पेड़ लगे हुए हैं यहां पर मैदान में एक--

पब्लिक खड़ी हुई है पूजा चल रही है।

बाहर रोड पे गाड़िया खड़ी है एक बुलेट खडी हे एक उः उः स्कूटर खडी हे एक मास्क लगाकर आदमी खङा हुआ हे।